नेट लगी हुई दिखाई दे रही है और लोग यहाँ पर खेल खेल रहे हैं।

यह रंगोली में सफ़ेद हरे और लाल कलर भरती हुई दिखाई दे रही हैं।